मुझे इस फोटो में पेड़ दिखाई दे रहे--

स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है।

मुझे इस फोटो में मछलियां दिखाई दे रही हैं।